यहां पर मुझे बहुत बड़ी थैली सफेद कलर में--

वाइट है और बैक का कलर ब्राउन है.

मुझे एक पेड़ दिख रहा है।

जेंट्स दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर की कमीज और ब्लैक कलर --

यहां पर मुझे सफेद कलर की--

दिख रही है और तीन बच्चे।

और पीछे हरे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे दीवार पर--

ब्लैक और गोल्डन कलर में गेट भी दिखाई दे रहा है।

एक पार्लर दिखाई दे रहा है जिसका कलर --

है और यहां बाल्टी भी है।

बहुत से लोग दिख रहे हैं।

और ब्लैक एंड वाइट मास्क पहना है।

और यहां लाल कलर का पोस्टर है और--

सफेद कलर का भी--

जिसमें हरा कलर का कुछ--

और यहां पर ब्लैक कलर में सीढ़ियां भी है।

यहां पर सफेद कलर की लाइट लगी हुई--

यहां पर मुझे कांच के ऊपर कुछ--

सफेद कलर का हुड पहना है।

स्कूटी का रंग सफेद--

टेबल भी है जिसके ऊपर ब्लैक और व्हाइट --

ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी है।

जगह दिखाई दे रही है।

इंसान ने वाइट कलर की कमीज पहनी है ।

मुझे ग्रे कलर में--

और एक आदमी के पीठ में बैग --

रोड दिख रही हैं और रास्ते से--

और यहां शॉप भी है।

और लाइट भी लगी हुई--

जो वाइट कलर में है।

लेडीज की फोटो लगी हुई--

जिसमें गोल्ड प्लस लिखा हुआ है।

यहां पर बहोत लोग दिख रहे है।